यहां पर बड़ी सी खिड़की है जो यहां पे कमरे रखे हुए हैं शो के सामने--

और यहां पे दीवाले साइड में चॉकलेटी कलर की है और ये कुर्सियां पे बैठे हुए हैं दो बंदे--

यहां पे दो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं यहां पे पा खंबा का है जो यहां पे पीलर का काम कर रहे हैं।

यहां पे है पेंटिंग जैसे बनाए है यहां पे जो--

यहा पे कर रहे है लेडिज भी है अंदर जेन्स भी नजर आ रहे है।

जो अंदर साइड में है यह पे गर्मी है जो बोहोत--

घास है नीचे यहां पे खा रहे हैं कुछ लोग--

लाइट चालू है रात का टाइम नजर आ रहा है साइड में थम्सअप की बॉटलस है कोल्ड ड्रिंक्स है।

टेबल भी है जो यहां पे ड्रावर है जो इनके अंदर यहां पे रखा गया है दीवार का कलर वाइट है।

यहां पे मुर्गा है और यहां पे साइड में झाड़ पेड़ पौधे हैं यहां पे शोके और यहां पे है हाटे हैं यहां पे जोड़कर बनाया हुआ--

दुकान की तरह है और एक आदमी यहां पे तह रहा और एक लेडी भी है।

यहां पे है केक्स एंड पेस्ट्री स्नैक्स भी लिखा हुआ है जो भी काम चालू है यहां पे और यहां पे आसमान में बादल है जो घने-घने बादल लिख रहे हैं।

यहां पे एक मूर्ती है तो यहां पे गोल्डन कलर की एक मूर्ती है।

तो यहां पर बिल्डिंग्स हैं जो बड़े-बड़े ऊंचे हैं वाइट कलर के हैं।

जो यहां पे दो भेस है जो थैर है पानी में बैठने के लिए और यहां पे है हरियाली पूरी तरह से यहां पे--

नीचे से वाइट कलर का कलर मारा हुआ है यहां पे--

टूविलर खड़ी हुई है लाइन से ओर यह पर भी है।

यहां पे बोहोत सारे लोग है जेयनमे लड़कियां है लड़के भी है जो आके ठहरे हुए है।

कपड़ा मुझे हुए हैं लाल कलर का कपड़ा है वहां पे--